इस इमेज में रात का शो है जिसे पेड़ के ऊपर लाइटिंग की गई है येलो कलर की।

बांसुरी वाला जो बेच रहा है और यहां पे अलग अलग कलर के झंडे लगे हैं टाइल्स लगी है और झूला है जाली--

और यहां पे एक शैडो भी है और यहां पे कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के जैसे--

ये छोटी मछली ग्रीन पन्नी में है ऑरेंज पन्नी में है एक बड़ी मछली है।

मिरर के ऊ आस पास बल्ब लगे हैं व्हाइट कलर के।

इस पे बॉटल रखी गई है स्टील वाली।

प्लेट के ऊपर तीन क्यूब आइस क्रीम्स है।

और व्हाईट कलर से लिखा गया है कोकाकोला का है लोगो ।

साइड में एक ग्रीन कलर के कारपेट है।

फर्स्ट फ्लोर पे एक आदमी है।

ब्लैक कलर का पेंट है ऊपर व्हाइट कलर का पेंट है।

इन्होंने ब्लू कलर का पूरा ऊपर नीचे पहना है ब्लैक कलर का बैग टांगा है।

तीन चार प्रकार की मछलियां है।

ब्रांड है कुकर का जो लिखा है।

यहां पे तीन लोग जा रहे हैं और आ--

और इस रूम में एक बेड है जिसपे व्हाइट कलर की बेडशीट है।

मेट्रो स्टेशन है जिसपे लोग कुछ लोग खड़े हुए हैं।

गेट खुला से गेट के आगे लिखा बंद है इसमे लिखा है इन ।

एक आदमी जो चश्मा लगाया है उसकी बियर्ड है।

इस इमेज में दो सीढ़ियां है।

मैंगो का सांभर पाउडर का पैकेट टंगा हुआ है।

सबने वाइट कलर का फ्रॉक पहना है और दो लड़कियों ने पिंक कलर का पहना है।

एक आदमी जिसने अपने हाथ ऊपर खड़े किए हैं और ब्लैक कलर की वॉच पहनी है उसका फेस ब्लर है।